ठीक करने की कोशिश कर रहा है गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा है।

यह एक रिक्शा है जो पैदल रिक्शे होते हैं वो रिक्शा है।

यह एक प्रचलित मंदिर जैसा लग रहा है जिसे सामने से--

और बहुत सारे पत्थल लगे हुए हैं साइड में पुराने पिछले पत्थर हैं।

टाइप की लगे है जो पन्नियों से कवर है दुकान कुछ दिख नहीं रहा है और एक आदमी गाड़ी को ठीक कर रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है एक कुर्सियां रखी हैं बहुत सारी --

एक अंकलजी है जो अंकलजी एक गाड़ी को ठीक कर रहे हैं गाड़ी को साफ कर रहे हैं बाल्टी और कपड़े लेके।

ब्लैक कलर की चेयर हैं जिसमें एक साइड चार चेयर हैं एक साइड चेयर है दोनों तरफ और बीच में टेबल रखे हुए--

यह कोई चौल है जिसमें आदमी बैठे हैं और एक लेडी बैठी हुई है बहुत सारी मोटरसाइकिल रखी हैं।

बगल में लाइट का ट्रांसफर लगा हुआ है और साइड में एक चौल बनी हुई है।

और मोटरसाइकल है मोटरसाइकल शीशे सारे चमक रहे हैं लाइट की वजह से।

इसमे बहोत अच्छा डेकोरेट है और साउंड ऐसे रखे हुए हैं कि बस देखते ही मन लगे की ले ले।

लोग ये माइक बजा रहे है कुछ वीडियो त बजा बज बजा रहे हैं कुछ--

और एक सामने में सबसे बड़ी विंडो में विंडो बनी हुई है जो बगल में दिख रही है और जिम क्लासेस भी है।

खड़ा है और कुछ पिंक कलर के बच्चे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं एक ब्लू कलर का कपड़ा पहनें बैठे हुए हैं और सब कोई एक फंक्शन इंजॉय कर रहे हैं।

कारपेंटर होते हैं वो कारपेंटर करते हैं वो पेंटिंग लग रही है पहले लैपटॉप में रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड करने के बाद--

ये एक शोरूम है जो बहुत मकान बना हुआ है जो बहुत सुंदर है और--

और बस का इंतजार सब लोग कर रहे है और ये बहोत सारे ग्रीन पौधे लगे है बाद पीछे--

और एक दो बस और है जो खड़ी है अपने इंतजार में--

यह एक मंदिर है जिसमें मंदिर बहोत दूर से दिख रहा है सुंदर सा--

और अच्छा व्यू है नाइट का समय है इसमें।

ये ऐसा लग रहा है कि यह ऑफिस है जैसे ये ऑफिस होता है लोगों का--

इसमें दूल्हा दुल्हन बैठे हैं दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही हैं।

और ये दूल्हा एक दूसरे को दुल्हन को एक दूसरे को चावल डाल रहे हैं ऊपर से--

और कुछ और लेडिया बैठी हुई है बातें कर रही है एक लेडी एक को देख रही है।

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गाड़ी रखी हुई --

यह कोई हम्म अ गेट है यहाँ पे गेट बना हुआ है और नीले--

पूजा लग रही है जैसे किसी चीज की पूजा हो रही हो क्योंकि इसमें--

सामने से और फर्नीचर कुछ रखा हुआ है जिनका समझ में नहीं आ रहा है।

यह किसी चीज की दुकान है जिस दुकान में वो उम होता है ना ये--

और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लंबे लंबे लंबे लगे हुए हैं।